आसपास अलग अलग रंग के बहोत सारे गमले लगाए गए हैं कुछ सफेद हैं कुछ पीले हैं कुछ लाल हैं स्टील के बाउंड्रीस लगाई गई हैं सामने की तरफ एक बहोत ही खूबसूरत पिंक कलर का फूल --

काँच लगा हुआ है इस बक्शे में इसके ऊपर अ बहोत तेज सफ़ेद रंग की लाइट जल रही है अंदर की तरफ कुछ सामान रखा हुआ है लकड़ी का बक्शा है पीछे की तरफ सफ़ेद रंग का पेंट --

एक तरफ एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है जिसका रंग सफेद और लाल है। इसके नीचे दरी बिछी हुई है लाल और काले रंग की कुछ कालीन बिछे हुए हैं।

रास्ता बना हुआ है जोकि काफी खूबसूरत लग रहा है। इसके आसपास बाउंड्रीज बनाई गई हैं ये लोहे की एक बहुत ही खूबसूरत लैंप लगा हुआ है जोकि लोहे का है।